दो-दो उंगली निकाले हुए है और मास्क पहने हुए है और चश्मे भी पहने हुए है और सर में टोपी और ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए हैं ।

यहाँ पर एक बड़ी -सी रूम दिख रही है यहाँ पे ढेर सारी लाइटे लगाई गई है और यहाँ पे एक टेबल लगाया गया है जिसपे ढेर सारे --

यहाँ पर हम देख रहे है कि यह एक रूम है जिसमें एक शटर लगाई गई है और यहाँ पे सामने में एक पोस्टर लगाया गया है जिसपे ढेर सारे पिक्चर बनाये गये है यहाँ पे एक बेंच हैं ।